इस फैक्ट्री में काफी सारी मशीने रखी हुई है जो की ब्लू कलर की सिलेंडर है और पीछे एक फायर एक्स्टिंग्विशेर भी रखा हुआ है दीवार पे।